ये मैदान काफी बड़ा है।

इस सड़क पर बहुत सी गाड़ी खड़ी है यहाँ काफी आदमी भी है यह सड़क पे दूर-दूर तक काफी खाली जगह है यहाँ पर एक इंजिनियर आए हुए हैं उसके साथ एक और आदमी है यहाँ पर इंजिनियर मशीन के द्वारा --

इस ट्रेन में तरह-तरह के माल लोड होते हैं ।